खुलने का समय सुबह साढ़े छै बजे से नौ बजे तक है।

उपेंद्र कुमार के द्वारा बनया जाता है यह एक पैन कार्ड सेंटर है।

सुधा सेंटर डेरी प्रोजेक्ट यूनिट गया डेरी गया --

अपोलो डायनोजस्टिस आल डेबिट क्रेडिट कार्ड हेअर एक्सेप्टेड हियर --

ऐड के तान इंटरनेशनल स्कूल में ऊपर इसके इसपे रेड कलर से लिखा हुआ है।

जिसका कलर रेड है प्रिंटेड है।

ये एक घने अबादी है जहाँ पर बहोत सारे पहाड़ है जिसमे बहोत सारे ग्रीन - ग्रीन कलर के घासे लगी हुई है।

लिखा हुआ है कुमार मल्टीस्पेशलिटी ।

एक परफेक्ट वैन है जो ऑरेंज और व्हाइट कलर का दोनों मिक्स है इसमें तीन दो चक्के है।

आगे एक पिल दो पिलर है जिसको घेरा गया है एक लकड़ी से |

ये एक पीला कलर का बिल्डिंग है जिसमें नारायणी होमिओ क्लिनिक है।

सारे पेड़-पौधे एकदम सुडोल है अच्छे लग रहे है कटिंग किये हुए है ।